इसमें एक पर्स है पर्स के ऊपर एक चरित्रा बनाया गया है।

कटिंग सीख रहे है एक मैडम खड़े है वे सीखा रही है बच्चा सब अपना चित्र बना रहा है ईस्ट वहाँ रखा हुआ है रखा हुआ है दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है --

यहाँ पे बोर्ड --

है यह विद्यालय बहुत बड़ा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर में बहुत सारा मोटरसाइकिल खड़ा है कुछ आदमी बाहर में खड़े हैं। एगो बैग लटकाए हुए हैं हाथ में बांधे हुए हैं।

सरसवती मां हाथ में ली हुई हैं। बहुत सारे बलून टंगा हुआ है। एक आदमी है जो बुक पढ़ रहा है। बगल में एक आदमी है जो साउंड बजा रहा है चादर ओढ़ के बैठा है।